यहाँ पर दो साइडिले दिखाई दे रही है यहाँ पर बैंक खुला यहाँ पर बैंक दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक चप्पल दिखाई चप्पले दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर कुछ एक दादा जी कुछ गाते हुए दिखाई दे रहे है एक--